मुझे एक पिक्चर दिख रही है जो सादे कलर के पिलर हैं और पिलर में--

और नीचे की डिजाइन छाई कलर की है और सामने में और लाल कलर की दीवाल थोड़ी सी दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिख रही है जिसके सामने एक चेयर है। उसपे एक लैपटॉप है।

कोई ब्लू कलर की है तो को पीली है रेड है।

उसकी कलर डार्क बैंगनी और ब्लू में है।

एक सफेद करर की इमारत है जो अधूरी है।

मुझे एक चित्र दीख रहा है मानो ऐसा लग रहा है की --

एक एक आदमी कूपन कटा रहे है झूले के लिए।

और बाहर से तरफ एक आदमी साइकिल मे कुछ सामान लेकर नीचे तरफ झुके हुए है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि ये बोहोत बड़ी खेल की मैदान है।

मुझे एक चित्र दिख रही है जो --

मानो ऐसा लग रहा है कि वो बोहोत बड़ी --

थोड़ी-थोड़ी आसमान भी दिखलाइ दे रही है।

जहां बहुत सारे गाड़ी चल रहे हैं।